इस चित्र में पाँच गुलदान रखे दिखाए दे रहे है लाल रंग का--

यह एक मैदान का चित्र दिखाई दे रहा है के सामने एक मकान दिखाई दे रहा है वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

नीले रंग की ट्रेन दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे पंजाब नेशिनल बैंक का चित्र दिखाई दे रहा है।